इस तस्वीर पर पगदंडी दिख रहा है।

साबुन है शैंपू है फेस वॉश--

इस पर छह अलग डिजाइन की टोकरी दिख रहा है।

बच्चे बेंच पर बैठ रहे हैं।

पर्दे नीला रंग के है।

तम्बू सफेद रंग का है।

जिस पर पीला और हरा रंग का सोफा है।

ये दुकान सॉफ्टवेयर दुकान है।

घर के बाहर चार झंडियां है।

दराज में तरीके के सामान रखा हुआ हैं।

पिलर पर घड़ी लटकाया हुआ है।

इस पर काला रंग का बेसिन है।

बैंक का नाम केनरा बैंक है।

जिस पर बहुत ही सारे समान रखा हुआ है।

दो आदमी और एक औरत--

जिस पर अपने ही काउंटर के अंदर बहुत ही सारे लोग बैठा हुआ है काम कर रहा है।